कुछ चेयर नजर आ रही है। जो के लाल रंग कलर मे रखी दिखाई दे रही है ।

और ये कंस्ट्रक्शन का काम एक कमरे में चल रहा है आसपास हथौड़ा और अन्य चीज़े भी रखी दिखाई पड़ रही है।

चित्र में हम एक सलून देख रहे है। सलून में एक मनुष्य बैठकर अपना फेसिअल कराते हुए दिखाई पड़ रहा है।

इनको डांस सीखा रहे है।

सामने बच्चों को गार्डन मे बैठता हुआ पा रहे है। ये बच्चे पढ़ाई कर रहे है।